योगा कर रहे हैं नीला टीशर्ट पहन के गुलाबी टीशर्ट पहन के पिंक कलर टीशर्ट पहन के.

बैकअप रेस्टोरेंट एंड बैकयूज हैं.

यह वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा है.

उधर महिला है उनके गोदी में एक बच्चा है.

घड़ी चौक दिख रहा है.

आना जाना लगा हुआ है.

हरसल पनीर का पोस्टर है।

सैलून में पर्दा जो है गुलाबी कलर का है।

एक भाई साहब पेपर पढ़ रहे हैं।

रंग बिरंगे परदे लगे हुए हैं।

यह सब प्रार्थना सभाए हो रही है.

नीचे अच्छा मैदान है उस पर भी कही कही घास है।

उसके सामने एक बंध है पेड़ है.

एक नीला पानी का बॉटल है।

ये ट्रवल्स का ऑफिस हे आर जिसका नाम है आर_के ट्रवल्स .

डॉग के लिए हे.

ब्लु कलर का व्हीकल भी है एक.

जिसका नाम लिखा हुआ है मानव देवी कॉलेज

एक दरवाजा दिख रहा है जो खुला है।

बहुत से मार्बल पड़े हुए हैं रंग-बिरंगे व्हाइट कलर का हैं.

यह एक आरोग्य केंद्र लग रहा हे.

यह एक व्हीकल का दुकान है. जीस--

हवाई चप्पल पहना हुआ है.

यह एक भक्ति समारोह है।